इस फोटो में हम देख सकते है यहाँ देवी माँ की मुर्तियाँ दिखाई दे रही है एक देवी माँ की मूर्ति है एक शंकर जी की एक हनुमान जी की और वे छोटी-छोटी मुर्तियाँ दिखाई दे रही है।

पीछे एक मूर्ति लगी हुई है जो भी व्हाइट कलर की साड़ी पहने हुए है और यह फत्तर की डिजाइनिंग बनी हुई है जहाँ मूर्ति रखी हुई है।

एक उसपे एक लैपटॉप है और उसमें बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं और एक व्यक्ति उंगली बता रहा है।

और वह बच्चे र्कसीटों पर वर्क कर रहे हैं अपने-अपने प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं।